बस दिख रही है आप यहां पे देख सकते हो आसमान वगैरह भी दिख रहे--

दिख रही है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे--

आप यहां पे देख सकते हो कुंडल लिखा हुआ है

ये फूल बहुत सारे फूल दिख रहे हैं ये यहां पे पीले रंग के फूल हैं गुलाबी रंग के फूल --